चित्र में एक लैब का दृश्य है यहां रैक्स पे स्लैब पे कुछ मशीनें रखी हुई हैं।

एक लोहे का गेट दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे एक ट्रांसफार्मर दिखाई पड़ रहा है।

काफी पेड़-पौधे भी पीछे दिखाई पड़ रहे हैं।

इस चित्र में कोई ऑफिस लेब दिखाई पड़ रहा है।

शटर में एक ऑफिस दिख रहा है दाहिने तरफ एक काले रंग का सोफा पड़ा हुआ है।

सामने दो हाइमर लाइट भी लगी हुई।

इस चित्र में बांस प्लास्टिक घास पुश से बने हुए एक मचान का दृश्य है।

और लाइटें भी दिखाई पड़ रही है दाई तरफ एक व्यक्ति काउंटर पर बैठा दिखाई पड़ रहा है।

यहां ऊपर में दो व्यक्ति काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

चित्र में ईंट से बनी हुई एक बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है।

चित्र में एक लकड़ी की आकृति दिखाई पड़ रही है।

जिसमे एक व्यक्ति नीचे बैठके उसे पर कुछ काम करता दिखाई पड़ रहा है।

इसमें में काफी रसियां भी टंगी हुई दिखाई पड़ रही है।

नीचे से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रहीं हैं।

जहां रंग-बिरंगे बैलून लगे हुए हैं।

इस चित्र में सामने एक बोर्ड भी दिखाई पड़ रहा है जिस पर पॉवर सॉल्यूशन एंटरप्राइज़ लिखा हुआ हैं।

एक फाइबर के भी दीवाल दिखाई पड़ रही है उसके बगल में एक स्कूटी खड़ा दिखाई पड़ रहा है।

चित्र में एक बड़ा सा हॉल दिखाई पड़ रहा है जहां बैठने के लिए काफी चेयर्स लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।